यहा पे देखिऐ कुर्सी पे बैठ के बाल कटवा रहे है| ये काफी अच्छे लग रहा है| इनका पर्दा भी बहोत अच्छा है जो इस्पे बाल गिरते ये काफी अच्छा लग रहा--

ये काफी भीड़ लगी हुई है | ये स्टेट बैंक का फ़ोटो है | स्टेट बैंक बोहोत अच्छी एक है एक बैंक है और देखिये यहाँ पे भी किसानो का पैसा दिया जाता है काफी अच्छा है ये स्टेट बैंक का फ़ोटो ये देखिये मोटर साइकिल भी खड़ी हुई है इधर टेहलिया भी खड़ी हुई है।

ये देखिए इन्होंने सब ने हाथों में थाम रखा है मोटा मोटे से कपडे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये औरतें भी बहुत अच्छी लग रही है।

ये आलम बगैरा का फोटो लग रहे है। ये बहोत अच्छे अच्छे है फोटो । काफी लोग देखे फोटो । हिन्दू मुस्लिम सभी लोग देख रहे हैं। आलम बगैरा ये काफी अच्छा होता है।

इन्होंने गले में रुमाल डाल रखा है लाल कलर का ये देखिये हिन्दू लोग भी हैं। ये अलम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये काफी अच्छा लग --

किराने वगेरा की दुकान लग रही यहां पे चूड़ियां वगेरा भी मिलती है ये काफी अच्छा लग रा है ये बोहोत अच्छी दुकान है यहा पे देखिए यहां पे जो चाहे वो मिलता है। वगेरा की --